इस दुकान में चश्मे कपड़े बहुत सारे प्लास्टिक के टब्स टूल्स --

इसमें हमें सड़क पे कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने एक--

यह लोगों ने यहां पे भीड़ लगा कर रखी है दो छोटी छोटी बच्चियों ने हाथों में--

कोई भी व्यक्ति तो नहीं दिख रहे हैं। मशींस रखी हुई है एक्सरसाइज करने वाली बाहर से--

शीशे की अलमारी में कुछ लड्डू रखे हुए भी नजर--

तेल शैंपू और भी बहोत सारी फाइनाल्स वगैरा--

रखी हुई हैं और नवरतन पावडर के भी डब्बे हमें दिख रही--

ये यह जाती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रक्स ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं।